एक मेडिकल की स्टोर की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे दुकानदार बैठा हुआ है काफी उजाला है उसमे और एक टेबल रखी हुई है जिसपे कैलक्यूलेटर पेन और केची एक पुस्तक रखी हुई है।

काफी दवाइयां दिखाई दे रही हैं फैन लगा है काफी उजाला है लाइटिंग दिख रही है कैमरा भी --

और हरियाली बहोत ज्यादा है इसमें --

और इस भवन में बहोत सारी बिल्डिंगस से हैं के अलावा इसमे बहोत सारी खिड़कियाँ भी हैं सामने ग्राउंड भी है अच्छा माहौल दिख --

यह किसी शादी समारोह का दृश्य दिखाई दे रहा है बहोत बहोत ही अच्छे फ्लॉवर लगे हुए हैं कुछ व्यक्ति मंच पर दिखाई दे रहे हैं सामने लाइटिंग भी है।

और मंदिर के मुख्य द्वार पर तीन प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं जिसमें कुछ व्यक्ति अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यह प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है।

मछली ओ की दुकान दिखया दे रही है एक ओरत मछली खरीदती हुई दिखया दे रही है एक व्यक्ति जा रहा है और एक दूसरी ओअरत भी खरीद रही है मछली बाजर दिखाय दे रहा --

और यह बहौत ही अच्छी जगह दिखाई दे रही है निचे अँधेरा है ऊपर उजाला है।